जिसके अन्दर तो ये सब्जी मंडी है । यहाँ पर तरह- तरह के और अच्छे- अच्छे स्वादिष्ट मछलियां यहां पे हैं। यहाँ पे आपको जैसी मछली चाहिए आपको ऐसे जैसे मछलियां आपको मिल जायेगी । देख सकते हैं सिंघा मछली और भी बड़ी-छोटी मछली --

और मम फुर्तीला महसूस होता है हमलोग को जिम करने से।

और सब का इलाज यहां पे चल रहा है आप लोग सारे देख सकते हैं यहां पे फ़ोन नंबर भी है कोई कमज़ोरी आदमी हो जाता है किसी को और यहाँ पे को इलाज किया जाता है यहाँ पे देख सकते है आप लोग --

बढ़िया क्वालिटी की बाइक यहाँ पे सस्ता और अच्छे दामों मे यहाँ पे आपको बाइक मिलेगी यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बड़ा रूम है यहाँ पे बहुत सी --

यहाँ पे अलग ही महसूस होता है देखने वाले को और ये बहुत ही बहुत ही --